यहाँ पीछे तसवीर नज़र आ रहा है तस्वीर बोहोत ही रंगीन बोहोत ही सुन्दर एक बिल्डिंग क नज़ारा आ रहा है इसमें जो लाइटिंग है बोहोत ही बढ़िया है यहाँ पे तस्वीर--

ये जो ये दीपक के जगा पेंडल लगरा है पेंडल के मा नज़र आरे बोहोत सारे लोग इसमें स्राधान्जली अंड इसमें जो है पूजा करते हुए नज़र आरे है और लाइटिंग जो है।

यह एक तस्वीर है शाम का तस्वीर लग रहा है नदी का तस्वीर लग रहा है दो बच्चे नज़र आ रहे है।

बिल्डिंग नजर आ रहा है बिल्डिंग बहोत ही बढ़िया खूबसूरत है दिन का तस्वीर है बहोत ही बढ़िया है इसमें जो है--

पेट है बोहोत ही खुबसूरत से डिजाईन किया गया है म्हणत से बनाया है।

ये जो तस्वीर है तस्वीर में फूलो का मार्किट का तस्वीर लग रहा है इसमें दो बन बन्दे बेठ कर बेच रहे है और दो--

आप फूलो के पेड़ पोधे नज़र आ रहे है ये बेल के ऊपर--

। हर रंग का जो हेन्की नज़र आ रहा है दिन का तस्वीर है बोहोत ही खुबसूरत है बोहोत ही बढ़िया दिख रहा है

और जो पिलर भी नज़र आ रहे है बोहोत सारे वेटलिफ्टिंग क सामान रखे हुए है जिम के बहुत सारे इक्विपमेंट रखे हुए है।

लाइट भी जले हुए जिम के अंदर लेकिन अ मुझे ये जहां तक मैं देख पा रहा हूं ये तस्वीर में कोई बंदे नजर नहीं आ रहे जो जिम के अंद--

ये जो तस्वीर है तस्वीर में बंदा खब और डिज़ा पोज़ करके खड़ा हुआ है बोहोत सारे बैलून लाल बैलून क सामने जो--

और जो यहाँ पे लाइट जले हुए है ये कोई ये बंदा खड़े होके जो--

बनाया है सीधा तस्वीर लेने के लिए सामने खड़े होके फोटो खीचा है।

तस्वीर है इसमें बोहोत सारा फूलो से सजा हुआ है लग रहा है कोई फंशन या फंशन का जो स्टेज बना हुआ है।

कल का पीछे का ऐडवरटाईसमेंट भी लगा हुआ है।

फेट्स जो फेट्स के बहार की तरफ जुटे रखे हुए है लाइट जले हुए है दरवाजे भी नज़र आ रहे है।

तस्वीर है तस्वीर जो है एक पार्क का शायद तस्वीर है बहोत सारे पार्ट का मोटर साइकल भी पार्क किये हुए हैं गाड़ी भी--

मां मंगला स्नेक्स एंड स्टोर्स के तस्वीर नजर आ रहे हैं जिसमें बोहोत सारे सामान रखे हुए हैं एक फ्रिज भी नजर आ रहा है फ्रिज में बोहोत सारे कोल्डड्रिंक रखे हुए हैं।

इसमें बिजली के तार वो भी नज़र आ रहे है आसमान भी साफ़ नज़र आ रहा है कुछ पेड़ भी दुध्ले नज़र आ रहे है ये तस्वीरे बोहोत ही खुबसूरत बढ़िया--

ये तस्वीरे कोई जिम का तस्वीर नजर आ रहा है थ्रेडमिल नज़र आ रहा है थ्रेडमिल में कोई नजर नहीं आ रहा है दिन का तस्वीर है।

ये जो तस्वीर है रेलवे स्टेशन का तस्वीर नज़र आ रहा है रेलवे स्टेशन नज़ारा आ रहा है धुप में माल गाडी भी नज़र आ रह है और स्टेशन में जो प्लेटफॉर्म है बोहोत सारे बन्दे नज़र आ रहे है।

दिन का तस्वीर है ऊपर जो है इलेक्ट्रिसिटी कबल है वो भी नज़र आ रहा है बोहोत सारे पेड़ भी नज़र आ रहे है स्टेशन बोहोत ही लम्बा है और बोहोत ही सुन्दर है।

स्टेशन का जो तस्वीर लिया गया है जी जिन्होंने भी लिया है बहोत ही खूबसूरत तरीके से लिया है और स्टेशन बहोत बढ़िया लग रहा--

ये एक तस्वीर है तस्वीर में बोहोत बड़ा सा हॉल नज़र आ रहा है हॉल में डिजाईन किया हुआ चेयर नज़र आ रहा है।

ये जो तस्वीर है तस्वीर में जो है एक मंदिर नज़र आ रह है मंदिर पेड़ भी नज़र आ रहे है हरे भरे पेड़ है।

दिन का तस्वीर है उजाले में लिया गया है बोहोत ही सुन्दर बढ़िया तरी--

और जो तस्वीर है तस्वीर में कुछ लोग एक्सरसाइज करते नज़र आ रहे है ये ज़ुम्बो क्लास है शायद--

और जो पोस किया गया है और इसमें जो है बोहोत ही बढ़िया तरीके से कमरे में ए_सी लगा हुआ है।

तो बस लाइट भी नज़ारा आ रहा है और उनको लग रहा है कोई शक क्र रहा है उसी के हिसाब से वो एक्सरसाइज में जंबो क्लासेज कर रहे है फ्लोर भी बढ़िया तरीके से दिख रहा है।

हवा के बिचो बिच खड़ा हो कर देख रहा है और एक छोटा सा बच्चा भी है जो चोहदा पन्द्रा साल का है।

ये जो तस्वीर है एक घर का अ- तस्वीर दिख रहा है बोहोत ही खुबसुरत सा घर है डिजाईन किया हुआ उसपे जो गेट है लोहे का है जो--

नीला रंग का है और जो वाल जो है पिंक कलर का है।

कलर किया गया है और घर का जो बाउंड्री है या गहर का बहार अन्दर का जो एरिया बोहोत ही खुबसूरत से साफ़ किया गया है बोहोत ही साफ़ सफ--

और जो है एक मंजिल का पिलर नज़र आ रहा है दिन का तस्वीर ये बोहोत ही बढ़िया है।

ये डस्टबिन है बोहोत ही सुन्दर है बोहोत ही बढ़िया तरीके से खीचा गया है है ये स्कूल डस्टबिन है बच्चे कम कर रहे है बच्चे को लिख प् रहे है य बोहोत ही बढ़िया तस्वीर है।

ये ओप्पो का शोरूम लग रहा है अ जो हर रंग का है और--

ये जो तस्वीर दिख रहा है कोई ट्रेन स्टेशन का तस्वीर दिख रहा है यहाँ पे ट्रेन भी नज़र रहा है ट्रेन स्टेशन भी नज़र आ रहा है।

और बोहोत सारे पेड़ भी भी नज़र आ रहे है ये तस्वीर में और ये दिन का तस्वीर है।

कम्प्यूटर भी रखा हुआ है कुछ दो तीन बंदे काम करते हुए देख रहे है फाइल्स भी बिखरें पड़े हैं ये जो है दिन का तस्वीर है।

बहार से रौशनी भी आ रहा है ऑफिस में अनदर में ऑफिस में लाइट भी जले हुए है।

ये जो तस्वीर है जो तस्वीर पहाड़ी रस्यता दिख रहा है बोहोत ही साफ़ सुथरा रास्ता है हर भरा है।

पेड़ भी नज़र आ रहे है बोहोत सारे किसे और इसमें जो है धुप में पहाड़ भी नज़र आ रहा है और यहाँ पर जो है लाइट --

शादी के फंशंस नज़र आ रहे है साउंड बॉक्स नज़र आ रहा है लाइटिंग भी बोहोत अच्छा आ रहा है दूल्हा दुल्हन डांस करते हुए दिख रहे है और इसमें जो है।

शादी में जो आये हुए है वो दूल्हा दुल्हन की डांस की लुत्फ़ उठाते हुए नज़र आ रहे है म्यूजिक भी अच्छा बज रहा है तस्वीर में दिख रहा है।

ये जो तस्वीर है तस्वीर में एक घर का गेट नज़र आ रहा है जो लोहे का है हरे रंग का है बाउंड्री वाल --

लम्बे लम्बे पेड़ है कुछ ब्लू कलर का साइन बोर्ड लगा हुआ है रस्ते भी बोहोत साफ़ सुथरे नज़र आ रहे है।

औ सामान से और यहा पे जो बैलून है जो रंग बिरंगे बैलून से सजाया गया है कोई पिंक कलर कोई ब्लू कलर कोई ग्रीन कलर --

ये एक तस्वीर है तस्वीर में जो है ये मुर्गी के फार्म की तस्वीर दिखाया गया है जिसमे मुर्गी के चूजे जो है।

ये जो तस्वीर है तस्वीर में जो कोई दूकान का तस्वीर दिखरा है।

लाइट भी जल रहे है काउंटर भी नज़र आ रहे है पिला रंग के और लाल रंग के काउंटर भी नज़र आ रहे है।

ये जो तस्वीर है बहुत बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है बिल्डिंग के नीचे बहुत सारे--

यह तस्वीर है तस्वीर में कुछ बच्चे जो है या कुछ लेडिस जो हैं भारत नाट्यम करते हुए नजर आ रहे हैं उनका जो--

भी नज़र आ रहे है ग्लास वाले और एक बोहोत बढिया तरीके से सेट किया हुआ हिया सब दिख रहा है।